खड़ा और लाइटिंग सजावट एकदम झकास है नंबर वन का सजावट है सजावट पीला कलर है पूरा अंदर पीला व्हाइट प्लेस है।

यह एक यूनियन बैंक का शाखा है जो एकदम आकर्षित के तरह लग रहा है | यूनियन बैंक का शाखा एंड ए.टी.एम दोनो है और ए.टी.एम के बगल में दो आदमी है एक गार्ड लग रहा है।

और बाइक बहुत लगा हुआ कोई स्कूटी है तो कोई बाइक है एक-दम झकास-झकास बाइक लगा हुआ और एकदम शटर--

ये एक घर लाल कलर का है एक घर पीले कलर का है और पूरे हरे हरा प्राकृतिक जैसा लग रहा ऊपर घर के ऊपर ट्री के तरह लग रहा है और गाछ वृक्ष भी है सामने एक पोल लंबा खंबा उसमें दो तार गिरे हुए हैं तार अच्छे--

सभी प्रकार के हरा हरा यहाँ पे हरयाली लग रहा है और बगल सब बगल नदी है और पानी बह रहा है।

यह एक तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस मंदिर है बहुत ही अच्छे लग रहा आकर्षित एकदम झकास मंदिर लग रहा हैऔर---

यह एक सिटीकार्ट मॉल है।

नीचे में व्हाइट है और चारों तरफ पीला है ऊपर में भी व्हाइट और पीला है वहां लाइट लगा हुआ मस्त लग रहा है पीला कलर में लाइट और ही ज्यादा मन को सूखी लग रहा है।

बिहार शिक्षा परियोजना स्कूल यहाँ पे सर्व सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढे और यहा पे ओ-ए-ये पूरा अच्छा लगा हुआ पूरा स्कूल की तरह पूरा सजाया गया है।

खंबा में एक खंबा के सामने पीले कलर का एक जो फूल लगा हुआ वह बहुत ही अच्छा नीले कलर का गेट बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये टेबुल टेबल बहुत ही अच्छा लग रहा है।

यहाँ एक आई_डी_बी_आई बैंक है जो बैंक दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है बैंक के तीनों-चारों साइड में गाछ-ब्रिक्छ लगा हुआ है एकदम हरा-हरा है।

जो बैंक देखने में तो पुराना लग रहा है पर उ बैंक अच्छा लग रहा है और बाइक ताइक लगा हुआ है दो चार बाइक लगा हुआ है और सीढ़ी लगा हुआ है बैंक नीचे मंजिला पे हैं।

ये पूरा प्राकृतिक है लग रहा है पूरा पेड़-पौधा हरी हरियाली आगे पीछे सब हरियाली है कुछ खजूर के गाछ जैसे लग रहेऔर हरे-हरे पत्ते है।

जो जंगली पौधा भी लग रहे है और पेड़ तेर बहुत ही अच्छा सजावट है बहुत ही अच्छा लग रहा है हरयाली और पूरा आगे पीछे सब जगह हरयाली है।

और नीला कलर का स्कूटी बहुत ही ज्यादा सुन्दर लग रहा है और पूरे कार्टून जमा हुआ है आगे पीछे----

यहाँ एक झूला लग रहा है जहाँ पर पार्क की तरहा लग रहा है पार्क बहोत ही अच्छा लग रहा है हरियाली पूरा जगह है और पार्क का कलर में हारा में हरा कलर का लोहा का बना हुआ पाइप है।

पीला कलर का मकान है जो मकान बहुत ही सुंदर लग रहा है।

और आगे में एक वृक्ष है जो जिसमे वृक्ष में व्हाइट और लाल कलर का पेंट किया गया है और-और माकन बहुत ही सुन्दर है चरों तरफ हरियाली है और बहुत ही आसमान-असमान व्हाइट है।